पीछे कुछ जालियां लगी हुई है और उधर ये ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो पूरा सामान से लोड किया हुआ लग रहा है।

इस तस्वीर में आपको एक वाटर पार्क दिखाई दे रहा है।

पीछे बादल दिखाई दे रहे हैं जो दिखने में बहोत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बादलों के साथ ये वाटर पार्क का नजारा बहोत ही सुंदर लग रहा है।

और यहां लिखा गया है कि हमारे यहां नए साल की डायरी कैलेंडर स्टेशनरी और स्पोर्ट्स की--

इस तस्वीर में आपको एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में आपको यहां रखी हुई बुक्स अलग अलग तरह की बुक्स कुछ ऊपर रखी हुई बुक्स कुछ नीचे रखी हुई बुक्स दिखाई दे रही है।

बाइक दिखाई दे रही है यहां कुछ मीटर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

एक बड़ी सी बस दिखाई दे रही है।

पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर आइडिया लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में आपको ओवन दिखाई दे रहा है।

लाइट की वायरस दिखाई पड़ रही हैं।

आदमी इन बच्चों को पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है एक वाइट कलर का बोर्ड दिखाई पड़ रहा है।

अंदर एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।

यहां की हरियाली भी बहोत ही अच्छी है।

बाहर कुछ मटके दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर के प आस पास लगी ये जालियां दिखाई पड़ रही है।

इस तस्वीर में आपको फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं।

नदी दिखाई दे रही है नदी के चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे है।